एण्ड कुछ काफी सारे लोग भी दे रहे हैं उसके आस-पास ब्लैक अ-अ ब्लैक गाड़ी भी दिखाई दे रही हैं एण्ड काफी सारा बड़ा मैदान--

यहा पर काफी सारे मशीने दिख रही है एक लकड़ा आईने मे देख कर पीक निकाल रहा है उसने ब्लैक बानियान एन ब्लैक--

यहाँ पर एक ऑटो दिखाई दे रहा है यहाँ पर एक अंकल भी खड़े हुए है यहाँ आस-पास काफी सारे माकन भी दिखाई दे रहे है।

यहां पर एक शॉप दिख रही है उस शॉप मे काफी सारा सामान दिखाई दे रहा है एंड उसमे कोको कोला के लिए रेड बॉक्स भी है जो उसमे कोको कोला रखा सखता--

यहाँ पर आस-पास कुछ पेड़-पौधे भी दिखाई दे रहे है एक आस-पास कार भी रखी हुई है कुछ लकड़ी भी दिखाई दे रही है यहाँ पर कुछ सरिया निकली हुई दिखाई दे रही है।

और यहाँ पर एक लड़का दिख रहा है जो लड़का अ गुलाबी शर्ट पहने हुआ है।

कुछ गुलाबी से डेकोरेशन किया गया है आस-पास काफी सारे लाइटिंग का डेकोरेशन भी किया जा रहा है।

यहाँ पर आस-पास एक मोटर साइकिल भी खड़ी हुई है एंड यहाँ पर एक पेड़ भी दिखाई दे रहा है यहाँ पर एक डांस विभाग है जहाँ पर पोस्टर रखने के लिए बॉक्स भी दिखाई दे रहा है।